-- और बहुत ही क्लीन रेस्टुरेंट दिखाई दे रहा है यहाँ पर चैरस भी रखे हुए है एक ग्रीन कलर की चेयर है और एक व्हिट कलर की चेयर है।

ऊपर रेस्टुरेंट के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमे पूरा मेनू लिखा हुआ है।

ओ दादा के ऑटो के पीछे एक आदमी भी खड़ा हुआ है ।

यहाँ पर एक ब्रिज दिखाई दे रहा है और बहुत ऊँचा ब्रिज है निचे से लोग भी गुजर रहे है।

मूली गाजर टमाटर केले सब टंगे हुए है।

यहाँ ऊपर बहुत ही हरियाली दिखाई दे रही है यहाँ पे एक भाटा भी रखा हुआ है रेड का और नीचे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा हैं ।

-- हिल टाइप कुछ बहुत हरियाली है यहाँ पे आसमान भी एकदम साफ़ दिखयी दे रहा है बहुत ही सूंदर सुन्दर नजारा है।